एक बिल्डिंग के जा रही है पास में एक लोहे जैसा खंबा टाईप का ऐसा कुछ खड़ा है ऐसे बिल्डिंग जो सारा टॉवर ओउर का जो होता है बिल्डिंग --

यंहा पे शायद की है ड्राई हुआ है बाल क्लीन करने के लिए और काफी हाँथ मे कुछ लिए हुए आदमी भी खड़ा हुआ है एक फैन लगा हुआ है एक--

बिल्डिंग गई हुई है बानी हुई है तीन चार सीडी भी दई-दी गई है एक गेट भी दिया गया है काफी गोल सा आकार का है अच्छा है देखने मे दृश्य ।

फ्रेश लग रहा है एक अंकल जी खड़े हुए है एक टेबल है और कई सारी चेयर्स अच्छी डली हुई हैं और बाहर एक क्या कहते है गेट है।

और कुछ लोग बेठे हुवे है सीडीओ पे और देख रहे है और एक गेट सा अच्छा लग रहा यहाँ पे गेट बना हुवा हैं। अ एक टिन शिट डली हुई है यहा पे भी अच्छा लग रहा कुछ अ --

पड़ा हुआ है और एक ये रोड सामने बनी हुई है यहाँ बत्ती के तार लटके हुए है मीटर भी लगा हुआ है यहां पर--

ये एक शॉप है यहा पे कई सारा सामान है यहा पे टोस्ट है रोस्ट है पॉपकॉन है और उम काफी सारी रैकेँ बनी हुई है लोहे की टाइप की।

यहां पे और एक और बिल्डिंग ईटें सी लगे हुए है कुछ भईया लोग काम कर रहे है एक चेयर पड़ी हुई है रोड बना हुआ है और आह् लकड़ी का स्टेंड अ खड़ा किया लोहे के प्लंबर है यहाँ पे--

एक शोप बड़ी सी मॉल टाइप की है यहां पे सामान रखा हुआ है काफी और एक रैक में सामान डला हुआ भी है एक टोकरी है उसमे रखा हुआ है।